ये बहोत ही अच्छी लग रही है। इसमें खिड़किया बहोत सारी हैं और एक और घर के पास दो पेड़ देख रहे है जो घने है

जिसमें ढेर सिंगार वाले दुकान में ढेर सारे बाहर खिलौने टांगे हुए हैं रंग-बिरंगे के --